सामने बैनर लगा हुआ दिखाई दे रहा है पानी की टंकियांँ बनी हुई दिखाई दे रही है । बिल्डिंगें दिखाई दे रही है बिजली का खंभा दिखाई दे रहा आसमान दिखाई दे रहा --

यहा एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसपर एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है बोर्ड का कलर नीला लगाई दिखाई दे रहा है। ये जो --

अ-बिल्डिंग दिखाई दे रही इसका कलर पीला दिखाई दे रहा है खिड़की खुल दिखाई दे रही है ए.सी. लगी हुई दिखाई दे रही है पाइप दिखाई द् एं रहें हैं।